बल्ब के नीचे एक गेंट बनाया गया है जो गैट बहुत ही अच्छा है।

उसके आगे एक टेबल है एक गेट है एक पंखा है।

एक खजूर का पेड़ एक पोल जिसमे लाइट लगा हुआ है।

यहां एक बहुत बड़ा बिल्डिंग नजर आ रहा है जो कि बहुत सुंदर है।

इसके अगल बगल लाइट से सजाया गया है।

ब्रिज बहुत है।

दूसरे व्यक्ति के हाथ में एक झोला है और हाथ में एक डब्बा वह और टोटो बहुत सा --

यह एक कपड़ा का मॉल है जिसमें काफी अच्छा सा सामान है।

अगल बगल दो बोर्ड है जिसमें की बहुत सारे वर्ड शब्द लिखे हुए हैं।

लाइट भी लगा हुआ है और उसके आगे में एक आदमी कुर्सी लेके बैठा हुआ है जहां पर लाइट भी जल रहा है।

इसमें एक बहुत बहुत बड़ा अलमारी है जिसमें शर्ट और जींस रखा गया नजर आ रहा है।

इसमें बहुत सारे रंग का पर्दा रखा गया है तथा घर का छत का रंग सफेद रंग से रंगा गया है।